ब्लू कलर का टेंट है और ग्राउंड बहुत कलरफुल हैं सब अच्छा लग रहा है व्यू भी बहोत अच्छा--

और बहोत सारी शर्ट रंग-बिरंगी शर्ट --

ये एक जिम खाना है यहां पे पंचिंग बैग्स हैं और रोप है।

और बहुत हरा भरा है भी हरा है फ्रेश हवा भी है दे सकता है ।

और अलग अलग चीज हैं यहाँ पे दोतीन जन हैं जो पराठे खा रहे हैं ।

यहां पे पेटीएम का स्कैनर बोर्ड है मेट्रो मेट्रो स्टेशन है।

यहां बहुत सारी चीज और बहुत सी--

यहाँ एक आयुर्वेदा का शॉप है यहाँ पे लिखा हुआ है फार्मा आयुर्वेदा और यहाँ पे दो--

लहंगा जैसा पहना है और ब्लैक कलर का टॉप और बाल खुला रखी वह एक स्टेज पे नाच रही है ।

ये एक खेत है जो गाँव में हम देखते है यूजुअली और धाख पे दो मोटे मोटे पेड़ है ।